देखने में ऐसा लगता है बहुत ही टेस्टी होगा पिज़्ज़ा इस लिए लोगों की इतनी भीड़ है।

कॉफी शॉप पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है करके।

और न्यूजपेपर पढ़ रहे हैं एक आंटी जी तो उनसे बात कर रही है।